लिबर ऑफिस कैल्क के परिचय पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में निम्न के बारे में सीखेंगे
लिबर ऑफिस कैल्क के परिचय के बारे में
लिबर ऑफिस कैल्क में विविध टूलबार्स के बारे में
कैल्क में नया डॉक्युमेंट कैसे ओपन करें
मौजूद डॉक्युमेंट कैसे ओपन करें
कैल्क में डॉक्युमेंट सेव और बंद कैसे करें
लिबर ऑफिस कैल्क लिबर ऑफिस सूट का स्प्रैडशीट घटक है
जिस तरह राइटर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है स्प्रैडशीट संख्यात्मक इंफॉर्मेशन के साथ व्यापक रूप से कार्य करता है
यह संख्याओं की भाषा के लिए एक सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है
यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान है
यह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है अतः यह कॉपी पुनःउपयोग और वितरित मुफ्त में किया जा सकता है
लिबर ऑपिस सूट के साथ शुरूआत के लिए आप या तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और या इसके उच्च वर्जनों संस्करणों जैसे एमएस विंडोज एक्सपी या एमएस विंडोज 7 का उपयोग कर सकते हैं या आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में gnuलिनक्स का उपयोग कर सकते हैं
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट संस्थापित नहीं है कैल्क सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर का उपयोग करके संस्थापित किया जा सकता है
सिनैप्टिक पैकेज मैनेजर पर अधिक जानकारी के लिए कृपया इस वेबसाइट से उबंटु लिनक्स ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें और इस वेबसाइट पर दिये गए निर्देशों का अनुकरण करके लिबर ऑफिस सूट डाउनलोड करें
पूर्ण निर्देश लिबर ऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में उपलब्ध हैं
याद रखें कि जब संस्थापन कर रहे हों कैल्क के लिए कंप्लीट संस्थापन का उपयोग करें
यदि आपके पास लिबर ऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित है आप स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में एप्लिकेशंस ऑप्शन और फिर आफिस और फिर लिब्रियोफिस ऑप्शन पर क्लिक करके लिबर ऑफिस कैल्क पायेंगे
विभिन्न लिबर ऑफिस घटकों के साथ एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है
लिबर ऑफिस कैल्क ऐक्सेस करने के लिए नये डायलॉग बॉक्स में स्प्रेडशीट घटक पर क्लिक करें
यह मुख्य कैल्क विंडो में एक खाली डॉक्युमेंट खोलेगा
अब चलिए कैल्क विंडो के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं
कैल्क में डॉक्युमेंट को वर्कबुक कहा जाता है
एक वर्कबुक में स्प्रैडशीट नामक कई शीट होती हैं
प्रत्येक स्प्रैडशीट में सेल्स रोज़ और कॉलम में व्यवस्थित होती हैं
प्रत्येक रो संख्या के द्वारा और प्रत्येक कॉलम एक अक्षर के द्वारा निर्धारित है
एक विशेष सेल जो रो और कॉलम के एक इन्टर्सेक्शन को संदर्भित करती है इसकी उपयुक्त रो संख्या और कॉलम अक्षर के द्वारा पहचान होती है
सेल्स फेरबदल और प्रदर्शन के लिए कई अधिक डेटा एलिमेंट्स और टेक्स्ट संख्याएँ सूत्र जैसी जानकारी रख सकती हैं
प्रत्येक स्प्रैडशीट में कई शीट्स होती हैं
और प्रत्येक शीट में एक मिलियन से कुछ अधिक रोज और एक हजार कॉलम्स हो सकते हैं
जो कि हमें एक सिंगल शीट में एक बिलियन से अधिक या सौ करोड़ सेल्स प्रदान करती है
कैल्क विंडो में विविध टूलबार्स होते हैं जैसे टाइटल बार मेन्यू बार स्टैंडर्ड बार फॉर्मेटिंग बारफॉर्मुला बार और स्टेटस बार
इस टूलबार्स के अलावा यहाँ ऊपर नामे बॉक्स और इनपुट लाइन नामक दो अतिरिक्त फील्डस हैं
टूलबार्स सबसे अधिक उपयोगी ऑप्शन्स को समाविष्ट करते हैं
जिन्हें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब आप स्प्रैडशीट के बायें किनारे पर शीट1 शीट 2 और शीट 3 नामक तीन शीट टैब्स देख सकते हैं
यह टैब्स वाइट टैब युक्त विज़िबल शीट के साथ प्रत्येक व्यक्तिगत शीट के लिए ऐक्सेस सक्षम बनाते हैं
अन्य शीट टैब पर क्लिक करके वह विशेष शीट दिखाता है और वह टैब सफेद में बदल जाता है
स्प्रैडशीट का मुख्य भाग वह है जहाँ ग्रीड के फॉर्म में विविध सेल्स युक्त डेटा एंटर होता है
प्रत्येक सेल कॉलम और रो के इंटर्सेक्शन पर है
कॉलम्स के टॉप में और रोज के बाईं ओर के आखिर में अक्षरों और नम्बर्स युक्त ग्रै बॉक्सेस की श्रृंखला हैं
ये कॉलम और रो हेडर्स हैं
कॉलम आ पर शुरू होता है और राइट की ओर जाता है तथा रोज 1 पर शुरू होकर नीचे की ओर जाती है
ये कॉलम और रो हैडर्स सेल संदर्भ बनाते हैं जो नामे बॉक्स फील्ड में दिखाई देते हैं
कैल्क में विविध घटकों के बारे में सीखने के बाद हम अब सीखेंगे कि लिबर ऑफिस कैल्क में नया डॉक्युमेंट कैसे ओपन करें
आप स्टैंडर्ड टूलबार में न्यू आइकन पर क्लिक करके या मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके और आखिर में स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करके नया डॉक्युमेंट ओपन कर सकते हैं
आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में नया कैल्क विंडो ओपन होता है
अब हम सीखेंगे कि स्प्रैडशीट में पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर कैसे बनाएँ
चलिए देखते हैं कि स्प्रैडशीट में कुछ सेल्स में डेटा एंटर कैसे करें
अतः स्प्रैडशीट की पहली शीट में सेल संदर्भित आ1 पर क्लिक करें
चलिए हैडिंग स्न टाइप करते हैं जो कि विषय के सीरियल नम्बर को संबोधित करता है
जिसे हम स्प्रैडशीट में प्रदर्शित करेंगे
अब सेल संदर्भित ब1 पर क्लिक करें और अन्य हैडिंग आईटीईएमएस टाइप करें
सभी आइटमचीज के नाम इस हैडिंग में होंगे जिनका हम स्प्रैडशीट में उपयोग करेंगे
उसी तरह एक के बाद एक सी1 डी1 ई1 फ़1 और जी1 सेल्स पर क्लिक करें और क्रमानुसार कॉस्ट स्पेंट रिसीव्ड डेट और अकाउंट हैडिंग लिखें
हम बाद में इन प्रत्येक कॉमल्स में डेटा इंसर्ट करेंगे
एक बार आपकी स्प्रैडशीट लिख कर हो जाय आपको इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए
इस फाइल को सेव करने के लिए मेन्यू बार में फाइल पर क्लिक करें और फिर सेव एएस ऑप्शन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जहाँ आपको नामे फील्ड में आपकी फाइल का नाम एंटर करना आवश्यक है
अतः पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर फाइल नाम एंटर करें
नामे फील्ड के नीचे आपके पास सेव इन फोल्डर फील्ड है जहाँ आपको फोल्डर का नाम एंटर करना आवश्यक है जो आपकी सेव की हुई फाइल में समाविष्ट होगा
अतः सेव इन फोल्डर फील्ड में डाउन ऐरो पर क्लिक करें
फोल्डर ऑप्शन्स की एक सूची दिखाई देती है
यहाँ हम फोल्डर चुन सकते हैं जहाँ हम अपनी फाइल सेव करना चाहते हैं
हम डेस्कटॉप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं
अतः फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी
अब डायलॉग बॉक्स में फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें
यह आपको फाइल टाइप ऑप्शन्स या फाइल एक्स्टेंशन की सूची दिखाता है जिसमें आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं
लिबर ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से फाइल टाइप ओडीएफ स्प्रेडशीट है जो डॉट ओडीएस एक्स्टेंशन प्रदान करता है
ओडीएफ का अर्थ है ओपन डॉक्युमेंट फॉर्मेट जो कि एक ओपन स्टैंडर्ड है
डॉट odsफॉर्मेट में सेव करने के अतिरिक्त जो कि लिबर ऑफिस कैल्क में खुल सकता है आप अपनी फाइल डॉट एक्सएमएल डॉट एक्सएलएसएक्स और डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं जो कि एमएस आफिस एक्सेल प्रोग्राम में खुल सकती है
डॉट सीएसवी अन्य प्रचलित फाइल एक्स्टेंशन है जो अधिकतर प्रोग्राम्स में ओपन होता है
इसका उपयोग प्रायः टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में स्प्रैडशीट डेटा को संचित करने के लिए किया जाता है
जो कि फाइल का साइज बहुत अधिक कम करता है और आसानी से स्थानांतरित होता है
हम ओडीएफ स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
आप देखेंगे कि ओडीएफ स्प्रेडशीट और कोष्ठक में डॉट ओडीएस फाइल टाइप फाइल टाइप ऑप्शन के ठीक आगे प्रदर्शित होता है
सेव बटन पर क्लिक करें
यह आपको टाइटल बार पर आपके पसंद के फाइलनेम और एक्स्टेंशन के साथ कैल्क विंडो पर वापस लाता है
उपर्युक्त चर्चित फॉर्मेट्स के अतिरिक्त स्प्रैडशीट डॉट एचटीएमएल फॉर्मेट में भी सेव की जा सकती है
जो कि वेब पेज फॉर्मेट है
यह उसी तरह हुआ है जैसा कि पहले समझाया गया है
तो मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव एएस ऑप्शन पर क्लिक करें
अब फाइल टाइप ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और ब्रेसेस के भीतर पर ओपनॉफिस डॉट ओआरजी कैल्क ऑप्शन पर क्लिक करें
यह ऑप्शन डॉक्युमेंट में डॉट एचटीएमएल एक्स्टेंशन देता है
सेव बटन पर क्लिक करें
अब डायलॉग बॉक्स में एएसके व्हेन नोट सेविंग इन ओडीएफ फॉर्मेट ऑप्शन को चुनें
आखिर में कीप करेंट फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि डॉट एचटीएमएल एक्स्टेंशन में डॉक्युमेंट सेव हो गया है
इस फॉर्मेट का उपयोग तब किया जाता है जब हम अपनी स्प्रैडशीट को वेब पेज के रूप में दिखाना चाहते हैं
जिसे वेब ब्राउजर प्रोग्राम के द्वारा ओपन कर सकते हैं
डॉक्युमेंट को स्टैंडर्ड टूल बार में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एएस पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है
पहले के अनुसार स्थान का चुनाव कर लेंजहाँ आप सेव करना चाहते हैं
विकल्प के रूप में आप मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर एक्सपोर्ट एएस पीडीएफ ऑप्शन पर क्लिक करके भी यह कर सकते हैं
दिखाई देने वाले डायलॉग बॉक्स में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर सेव बटन पर क्लिक करें
एक पीडीएफ फाइल बनेगी
चलिए फाइल और फिर क्लोज पर क्लिक करके इस डॉक्युमेंट को बंद करें
आगे हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस कैल्क में मौजूदा डॉक्युमेंट को कैसे ओपन करें
एक मौजूदा डॉक्युमेंट को ओपन करने के लिए सबसे ऊपर मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें
स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है
यहाँ वह फोल्डर ढ़ूंढें जहाँ आपने अपना डॉक्युमेंट सेव किया है
अतः डायलॉग बॉक्स के बायें किनारे पर स्मॉल पेंसिल बटन पर क्लिक करें
यहाँ टाइप आ फाइल नामे है
यह लोकेशन बार फील्ड को ओपन करता है
यहाँ फाइल का नाम टाइप करें जिसे आप ढूंढ रहे हैं
अतः हम फाइल का नाम पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर टाइप करते हैं
अब दिखाई देने वाली फाइल नेम्स की सूची में से पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर डॉट ओडीएस चुनें
अब ओपन बटन पर क्लिक करें
आप देखेंगे कि फाइल पर्सनल फाइनेंस trackerओडीएस ओपन होती है
विकल्प के रूप में सबसे ऊपर टूलबार में ओपन आइकन पर क्लिक करके और आगे की प्रक्रिया उसी तरह करके आप मौजूदा फाइल को ओपन कर सकते हैं
आप फाइल्स को डॉट एक्सएलएस और डॉट एक्सएलएसएक्स एक्स्टेंशन में भी ओपन कर सकते हैं
जो कैल्क में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द्वारा उपयोगित हैं
आगे आप देखेंगे कि उसी फाइलनेम के तहत फाइल में परिवर्तन कैसे करें और इसे सेव कैसे करें
अतः चलिए बोल्ड हैडिंग्स बनाकर फाइल में बदलाव करते हैं और फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं
तो पहले सेल संदर्भित आ1 पर क्लिक करें
माउस के बायें बटन पर क्लिक करके स्न कॉस्ट स्पेंट रिसीव्ड डेट और अकाउंट हैडिंग्स चुनें और फिर इसे सभी हैडिंग्स के साथ ड्रैग करें
यह टेक्स्ट को चुनेगा और इसे चिन्हांकित करेगा
अब बायें माउस बटन को छोड़ दें
टेक्स्ट अभी भी चिन्हांकित होना चाहिए
अब स्टैंडर्ड टूलबार में बोल्ड आइकन पर क्लिक करें
हैडिंग्स इस प्रकार बोल्ड होती हैं
अब चलिए हैडिंग्स का फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं
अतः हैडिंग्स को चुनें और फिर टूलबार में फोंट साइज फील्ड पर क्लिक करें
ड्रॉप डाउन मेन्यू में 14 चुनें
तो आप देखेंगे कि हैडिंग्स का फॉन्ट साइज बढ़ गया है
अब हमारे द्वारा उपयोगित फॉन्ट स्टाइल बदलते हैं
अतः फोंट नामे फील्ड में डाउन ऐरो पर क्लिक करें और फिर बिटस्ट्रीम चार्टर फॉन्ट नेम को चुनें
आवश्यकतानुसार बदलाव करने के बाद सेव आइकन पर क्लिक करें
आपने आपना डॉक्युमेंट सेव कर दिया और आप इसको बंद करना चाहते हैं तो केवल मेन्यू बार में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और फिर क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करें
यह आपकी फाइल को बंद करता है
अब हम लिबर ऑफिस कैल्क पर स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
हमने निम्न सीखा है संक्षेप में
लिबर ऑफिस कैल्क का परिचय
लिबर ऑफिस कैल्क में विविध टूलबार्स
कैल्क में नया डॉक्युमेंट कैसे ओपन करें
मौजूदा डॉक्युमेंट कैसे ओपन करें
कैल्क में डॉक्युमेंट सेव और बंद कैसे करें
व्यापक नियत कार्य कैल्क में एक नया डॉक्युमेंट ओपन करें
स्प्रेडशीट practiceओडीएस नाम से इसे सेव करें
सीरियल नंबर नामे डिपार्टमेंट और सैलरी के रूप में हैडिंग्स लिखें
हैडिंग्स को रेखांकित करें
हैडिंग्स का फॉन्ट साइज 16 तक बढ़ाएँ
फाइल को बंद करें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉन्टैक्ट एटी स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर संपर्क करें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
भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है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
spoken हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी स्लैश नमेक्ट हाइफेन इंट्रो यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटीबॉम्बे की और से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद